एक बहुत बड़ा गेट है जो लोहे का है उसमें पीले कलर का पेंट है चमकीले कलर का।

जो खपड़े का है उसका दीवाल है दीवाल में ईंटा लगा हुआ है।

मकान है मकान में सफेद कलर पेंट है उसका लाल कलर का बॉर्डर नीचे सारे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं उसके सफेद कपड़े पहने हुए बगल में कुर्सियां कुर्सियां लाल कलर की --